यह कोई प्रोग्राम हो रहा है स्टेज पे बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ है और ये कुर्सी लगाकर सभी लोग बैठे हुए हैं इधर कुछ लोग आ रहे हैं।

यहां पे रेड कलर का बैलून है और बहुत बैलून को बहुत गुच्छे गुच्छे लगाया हुआ है दोनो साइड लग रहा है बर्थडे जे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और एक लोग बहुत अच्छे --